कितना अ येथी लिंटर करतारन कुल येथी क बा देखा कितना मस्त के बाटें दुकानी वाला सामान रखें खातिर बनावतन कुल।

राधे जी की मूर्ति हइ राधे कृष्णा बानन लोग बजवातना लोग बाँसूड़ी माला पहिनलें बाना लोग ।

कपडा के दुकान ह एमें खूब ढेर के कॉपी ओपी अउरी कपडा वपडा धइल बा इ सब चीज ऐइजा बिकाला एकदम अल्मारी खान कप्बोर्ड बना के धइल बा ओहि में इ रैक ह |

लइका आव ताने कुल बिन के ले जा ताने कुल बहरे काउंटर पर पइसा देके जा ताने कुल केतना मस्त उज्जर उज्जर कई गो बनावल बा एइजा केतना बढ़िया बढ़िया लाइट लगावल बा केतना मस्त बाटे नीचे बहुत बढ़िया बा इ |

प्रकार के एमे चीज बनावल बा। उहो कगजे से नीला पियर हरिहर गुलाबी रेड हउ कलर संतरा ओरेंज --

अ उज्जर सफ़ेद ओकरे बाद ओकरे टेबल पे धइल बा टेबल पे एगो लाल कलर के कपड़ा बिछावल बा आउ ऊपर लाल कलर पे एगो आउ टेबल बा नीला कलर के कागज़ के कैची बा टेप बा अगेरा बा।

यहाँ सब जगह टाईल्स लगावत तन कुल। ई मजदूरहा हउअन कुल। सब जगह टाईल्स वीलस लगात न कुल। ई साला वाला सब देखअ केनता बढ़िया से बनातने कुल तिनगो बाना कुल।